इसमें एक टेंट लगा हुआ है जिसके नीच बहुत सारी औरतें व कुछ आई पुरुष दिखाई दे रहे है।

स्माइली बैलून का कलर येलो व व्हाइट है इसमें बहुत सारी कुर्सियां टेबल्स रखी हुई दिखाई दे रही हैं।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

कुछ लोग इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे है ये बच्चों के खेलने का स्थान है एक बड़ा गार्डन है ऊपर कुछ आसमान लाल व नीला दिखाई दे रहा है।

दो साइकिल अह दो मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखा रही है पास में एक मां शीला नाम की शॉप है जिसमें कुछ पंखे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर छत मे कुछ व्हाइट लाइट लगी हुई है एक बड़ी ए_सी लगी हुई नज़र आ रही है सेंटर पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ भी नज़र आ रहा है।

ये अर्जनसर का रेलवे स्टेशन है जिसपे पटरियां दिखाई दे रही हैं बहुत सारे खंभे व --

फोर व्हीलर दिखाई दे रहे हैं आस पास कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं पटरियों की संख्या तीन से चार हैं एक गाय खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये यह एक रतन ज्वेलर्स की दुकान दिखाई दे रही जिसके ऊपर--

यह एक शॉप है जिसमें लेडीज के पर्स रखे हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लाइटें लगी हुई नज़र आ रही है अलमारी रखी हुई है जिसके अंदर खाने बने हुए नज़र आ रहे हैं।